तस्वीर में एक कमरा को दिखाया गया है।

इस पिक्चर में बहोत सारा सफेद रंग का चेयर है।

साथ में एक कारपेट भी है दुकान के बगल में बहुत सारा अलग घर भी है एंटीना लगा है सोलर लगा है दुकान के आगे एक बकेट भी है बगल में एक दुकान है उसका दरवाजा बंद है दुकान के आगे राउंड से कुछ है।

तस्वीर में एक एप्पल शोरूम को दिखाया गया है कमरे का रंग काला सफेद है कमरे की दीवार पर इयरफोन के चित्र बने हैं।

सेफ के ऊपर बहुत सारे समान रखे हैं जैसे की बैग्स कुशन और बहुत सारे हैंगर पर भी कपड़े लटके हुए हैं।

तस्वीर में सफेद बस है इस बस पर सीढ़ी लगा है बस के ऊपर पांच लोग बैठे हैं।

तस्वीर में गुरुद्वार को दिखाया गया है।

तस्वीर में पीले रंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा हुआ एक बिल्डिंग है।

आगे में एक लाल रंग का घर है उसके छत पर कुछ पौधे उगे हैं दाई और एक बैठने की जगह बने हैं।

बहुत बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं सफ़ेद बादल हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं बहुत सारे रंग बिरंगे घर हैं।

साइड में नो पार्किंग लिखा हुआ है और पेड़ पौधा--

और रूम में तीन चेयर भी है सफेद रंग का और चेयर के ऊपर हेलमेट है।

बड़ा सा पाइप है आगे सीधे रास्ते पर पीले रंग का घर है घर के ऊपर पोस्टर लगा है एक ओटो है एक सफेद रंग का कार --